ब्लैक कलर की कुर्सी है एक फाइवजी प्लान की छतरी भी रखी हुई है।

रात का समय है ये एक प्लेटफार्म है टू दो नंबर प्लेटफार्म लिखा हुआ है वाइट कलर की लाइटे जल रही है।

गुलाबी कलर के फूलों की एक माला टंगी हुई है और नीचे बोरी में गुलाब की पंखुड़ी --

कई लोग बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी पर--

जिसमें लाइटें लगी हुई है सफेद कलर की और बाकी की दुकान आसपास की बंद है।

सब बगल में रोज डिजिटल सेवा की दुकान भी खुली हुई है उस पर भी दिए रखे हुए हैं।

अपने सिर पर गमछा पहना हुआ है।

ये एक ब्लू कलर का पत्थर है।

पानी फुब्बारे के रूप में आ रहा है और हाथी के ऊपर एक बच्चा बैठा है।

लाल और यल्लो कलर की की है और पेन के डिब्बे भी रक --

जिसने चेक की सर्ट पहनी हुई है एक बड़ा सा --

पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कोई अपनी कॉपी पर लिख रहा है।

गले में रस्सी बंधी हुई है ग्रीन कलर की।

व कुछ ओरिगामी पेपर से ड्राइंग पेंट कर रहे हैं।

ये एक मार्केट है जिसमें कई दुकानें हैं और कपड़ों की दुकान भी हैं।

जो फर्स्ट मंजिल तक बना हुआ है सफेद कलर का जहाज है।